इस दुकान के नीचे दो आदमी खड़े हैं जिनके मुंह ब्लर किया गया है।

इस भगवान सबकी फोटोएं दिख रही हैं।

और भगवान का ही मुंह ब्लर किया हुआ है।

गेट के बगल में बहोत एक जंगल है जिसमें दो आदमी कुछ काम कर रहे हैं।

यहां के आदमी सब इस नजारे का मजा उठा रहे हैं।

ये एक काम होने वाला जगह है जहां पे लोग काम कर रहे हे।